और पांच इंसान दिखाई दे रहा है।

आइस भी दिखाई दे रहा है।

फ्लोर में कारपेट बिछा के भी दिखाइए दे रहा है।

चेयर भी दिखाई दे रहा है।

लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारा लैक्टोजन भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सा लड़की लोग दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है।

और दो रिक्शा भी दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में दो ठो कार दिखाई दे रहा है और बड़ा सा तीन चौका दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में तीन चार इंसान दिखाई दे रहा है।

इ पिक्चर में लाल कलर का डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में एक शेरनी दिखाई दे रहा है।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

ये पिक्चर में बहुत सारा घर दिखाई दे रहा है।

और टूटा फूटा मोबाइल भी दिखाई दे रहा है।